ये एक मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही पुराना है मंदिर है और ये मंदिर के बाहर एक डस्टबीन भी रक्खा गया है।

और ये मंदिर काफी अच्छा है और थोड़ा मैदान भी है मंदिर के आगे।

ये समाहरणालय जहानाबाद है और इसका द्वार अभी खुला हुआ है इसके अंदर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और इसके अंदर पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं।

ये जिला विधिज्ञ संघ जहानाबाद है और उसके बाहर बोहोत सारे लोग है और इसके बाहर कुछ बाइके भी खड़ी हुई है।

एक पार्क है और पार्क पर एक व्यक्ति का टेहल रहा है और यहाँ पे लंबे-लंबे पेड़-पेड़ है जो खजूर के पेड़ हैं|

और यहाँ पर पेड की छटाई की गई है और यहाँ पर मैदान भी है काफी बड़ा |